कुछ बच्चे वाइट ड्रेस में परफॉर्म कर रहे हैं उसमें झंडा दिख रहा है।

एक खेत दिख रहा है उसमें एक काले कलर की मुर्गी खड़ी है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं एक लाइट दिख रही है।

ग्राउंड में पानी है ग्राउंड के पीछे पेड़ लगे हैं।